लिनक्स में जनरल परपज़ यूटीलीटीज़ के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम अपने आप को कुछ बुनियादी लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले लिनक्स कमांड्स से परिचित कराएँगे
इस अभ्यास का मुख्य प्रयोजन हैलिनक्स पर काम करने की शुरुआत कराना
पहली कमांड जो हम देखेंगे वो है एक्को कमांड
ध्यान दें लिनक्स कमांड केस सेंसिटिव होती हैं
यहाँ सभी कमांड और उनके पर्याय छोटे अक्षर में हैं और जब नहीं है तब बताया गया है
इस कमांड का उपयोग स्क्रीन पर मेसेज यानि कोई संदेश प्रदर्शित करने के लिए करते हैं
टर्मिनल को ओपन करने की प्रक्रिया पहले से ही एक दूसरे ट्यूटोरियल में समझाई गयी है
प्रोंप्ट पर इको स्पेस हेलो वर्ल्ड टाइप करें और एंटर दबायें
यह स्क्रीन पर प्रथागत हेलो वर्ल्ड मेसेज प्रदर्शित करता है
इको कमांड को हम वेरीएबल के मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं
प्रोंप्ट पर बड़े अक्षर में इको स्पेस डॉलर शेल टाइप करें और एंटर दबायें
यह आउटपुट है कि वर्तमान शेल इस्तेमाल हो रही है
हम इको कमांड के साथ एस्केप सीक्वेन्सेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं
इसके लिए लिनक्स में हमें -e ऑप्शन का प्रयोग करना होगा
सामान्य एस्केप सीक्वेन्सेस में टैब के लिए t नई लाइन के लिए n तथा c एक एस्केप सीक्वेन्स है जिसे जब इस्तेमाल करते हैं तो प्रोम्प्ट को उसी लाइन पर प्रदर्शित करता है
यह उपयोगी हो सकता है यदि कुछ एंटर करने से पहले हमें प्रोम्प्ट मेसेज यानि त्वरित मेसेज चाहिए
प्रोंप्ट पर एचो स्पेस माइनस ई सिंगल क्वोट में टाइप करें बैक स्लैश सी कमांड एंटर करें और एंटर दबायें
हम देखेंगे कि उसी लाइन पर Enter आ कमांड प्रिंट होने पर प्रोम्प्ट प्रदर्शित होगा
आप जानना चाहेंगे कि लिनक्स कर्नल का वर्श़न जो आप चला रहे हैं वह कौन सा है
इसके बारे में तथा हमारी मशीन की अन्य विशेषताओं को जानने के लिए हमारे पास उनमे कमांड है
प्रोंप्ट पर उनमे स्पेस हाइफेन र टाइप करें और एंटर दबायें
आपका यूज़रनेम क्या है यह जानने के लिए प्रोम्प्ट पर व्हो स्पेस एएम स्पेस आई टाइप करें और एंटर दबायें
यह असल में व्हो कमांड से आता है जोकि सिस्टम में लॉगिन हुए वर्त्तमान उपयोगकर्ताओं की सूची बनाता हैयदि आपका सिस्टम एक मल्टीयूज़र सिस्टम है तो
कई दफा आपके लॉगिन पासवर्ड में समझौता हो सकता है और आप उसे बदलना चाहोगे
इसके लिए हमारे पास पासवाद कमांड है
प्रोंप्ट पर p a s s w डी टाइप करें और एंटर दबायें
जब आप इस कमांड को टाइप करते हैं वर्त्तमान पासवर्ड को टाइप करने के लिए कहेगा
यहाँ मैं सिस्टम का कर्रेंट पासवर्ड टाइप करूँगी
जब वह सही से एंटर करेंगे तब आपको अपना नया पासवर्ड एंटर करना होगा और उसकी पुष्टि के लिए दुबारा टाइप करें
लेकिन वर्त्तमान पासवर्ड को अगर आप भूल गए हैं तो क्या करें
फिर भी वर्तमान पासवर्ड को जाने बिना आप पासवर्ड बदल सकते हैं
लेकिन यह सिर्फ रूट यूज़र द्वारा किया जा सकता है
अब रूट यूज़र कौन है
वह एक विशेषाधिकारों वाला यूज़र है
समरूपता बनाते हुए हम यह कह सकते हैं कि रूट यूज़र्स विन्डोज़ में ऐड्मिनिस्ट्रेटिव पद के यूज़र के समान है
सिस्टम में दिनांक तथा समय आप जानना चाहोगे
इसके लिए डेट कमांड का उपयोग करते हैं
टर्मिनल में डेट कमांड को टाइप करें और एंटर दबायें
यह सिस्टम का वर्तमान समय और दिनांक प्रदर्शित करेगा
जैसे कि हम देख सकते हैं डेट कमांड हमें दोनों दिनांक और समय देता है
इसके बहुमुख उपयोग होने के साथ इसके कई विकल्प भी हैं
प्रोंप्ट पर डेट स्पेस प्लस परसेंट सिग्न कैपिटल ट टाइप करें और एंटर दबायें
यह hhmmस् के रूप में केवल हमें समय बताता है
प्रोंप्ट पर डेट स्पेस प्लस परसेंटेज सिग्न स्मॉल ह टाइप करें और एंटर दबायें
यह महीने का नाम बताता है
प्रोंप्ट पर डेट स्पेस प्लस परसेंटेज सिग्न स्मॉल एम टाइप करें और एंटर दबायें
यह सांख्यिक रूप में साल का महीना बताता है
यहाँ यह फरवरी महीने के लिए 02 दिखा रहा है
आपको प्राप्त आउटपुट के अनुसार इसे मिलायें
प्रोंप्ट पर डेट स्पेस प्लस परसेंटेज सिग्न स्मॉल य टाइप करें और एंटर दबायें
यह वर्तमान साल के आखिर दो अंक बताता है
हम इन पर्यायों को संघटित कर सकते हैं
उदाहरणस्वरूप प्रोंप्ट पर डेट स्पेस प्लस डबल क्वोट्स में परसेंटेज स्मॉल ह परसेंटेज स्मॉल य टाइप करें और एंटर दबायें
यह फरवारी 11 दिखा रहा है
अन्य संबंधित कमांड है सीएल कमांड
हालाँकि यह आम कमांड नहीं है यह हमें कोई भी महीना और साल देखने में मदद करता है
वर्तमान महीने के कैलन्डर को देखने के लिए प्रोंप्ट पर सीएल टाइप करें और एंटर दबायें
किसी भी महीने का कैलन्डर देखने के लिए मानिए दिसम्बर २०७० प्रोंप्ट पर सीएल स्पेस 12 स्पेस 2070 टाइप करें और एंटर दबायें
यह दिसम्बर 2070 का कैलन्डर दिखाता है
आगे बढ़ने से पहले हम फाइल्स और डाइरेक्टरीज़ के बारे में कुछ चर्चा करते हैं
लिनक्स में लगभग सब कुछ एक फाइल है
अब सवाल है की फाइल क्या है
वास्तव में फाइल वह है जहाँ हम अपने डाक्यूमेंट्स और पेपर्स संग्रहित करते हैं
उसी प्रकार से एक लिनक्स फाइल भी जानकारी को संग्रहित करने की जगह है
अगला डाइरेक्टरी क्या है160
डाइरेक्टरी को फाइलों तथा अन्य उप डाइरेक्टरीज़ के संग्रह के रूप में समझा जा सकता है
डाइरेक्टरी हमें अपनी फाइलों को व्यवस्थित रूप में आयोजन करने में मदद करती है
यह विन्डोज़ में फ़ोल्डरों के समान है
लिनक्स सिस्टम पर जब हम लॉगिन करते हैं स्वतः से होम डाइरेक्टरी में होते हैं
होम डाइरेक्टरी देखने के लिए प्रोंप्ट पर एचो स्पेस डॉलर होम टाइप करें और एंटर दबायें
अगली कमांड हमें वर्त्तमान डाइरेक्टरी जिस पर हम काम कर रहे हैं उसे दिखाने में मदद करती है
वह है पीडबल्यूडी जो प्रेसेंट वर्किंग डाइरेक्टरी से जानी जाती है
प्रोम्प्ट पर पीडबल्यूडी टाइप करें और एंटर दबायें
अब जब कि हमें अपनी डाइरेक्टरी के बारे में पता है तो हम उस डाइरेक्टरी की फाइलों तथा सब डाइरेक्टरीज़ के बारे में जानना चाहेंगे
इसके लिए हम एलएस कमांड का इस्तेमाल करेंगे जो कि सबसे व्यापक रूप से यूनिक्स और लिनक्स में प्रयोग की जाती है
एलएस कमांड टाइप करें और एंटर दबायें
अब आउटपुट को देखें
फाइलें और सब डाइरेक्टरीज़ साधारणतः अलग अलग रंग में दिखते हैं
एलएस कमांड बहुमुखी है और इसके बहुत से ऑप्शंस हैं
चलिए इनमें से कुछ देखते हैं
प्रोम्प्ट पर एलएस स्पेस माइनस माइनस अल्ल टाइप करें और एंटर दबायें
ये सभी फाइलों के साथ साथ छुपी हुई यानि हिडन फाइलें भी बताता हैफाइल नेम जो डॉट से शुरू हो रहे हैं वो यहाँ पर हिडन फाइलें हैं अगर हम फाइल ही नहीं बल्कि उसके साथ और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो माईनस ल ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं
प्रोम्प्ट पर एलएस स्पेस माइनस स्मॉल ल कमांड टाइप करें और एंटर दबायें
यह हमें फाइल परमिशंस यानि फाइल आज्ञा फाइल के अधिकारी यानि ओनर का नाम लास्ट मोडिफिकेशन टाइम यानि पिछला संशोधन समय बाइट्स में फाइल साइज़ इत्यादि बताता है
इस ऑप्शंस का विवरण इस वर्त्तमान ट्यूटोरियल के क्षेत्र से बाहर है
1एस को कई ऑप्शंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम बाद में देखेंगे
इन सभी जानकारी को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के बजाय हम एक फाइल में संग्रहित कर सकते हैं
असल में इस तरह से कोई भी कमांड के आउटपुट को फाइल में संग्रहित करके रख सकते हैं
कमांड के बाद राइट ऐंगअल ब्रैकिट और फाइल के नाम को टाइप करें अर्थात हम एलएस स्पेस माइनस स्मॉल ल स्पेस राइट एंगल ब्रैकेट स्पेस फाइलइंफो लिखते हैं
अब सभी फाइलों और फोल्डरों की जानकारी फाइलइंफो नामक फाइल में जायेगी
लेकिन हम इस फाइल के कंटेंट्स को कैसे देखें
इसके लिए हमारे पास कैट कमांड है
बस कैट स्पेस और फाइल का नाम टाइप कीजिये यहाँ नाम है फाइलइंफो और एंटर दबायें
आप उसके कंटेंट्स देख सकते हैं
दरअसलcat का एक और मुख्य उपयोग है फाइल को बनाना
इसके लिए प्रोंप्ट पर कैट स्पेस राइट एंगल ब्रैकेट स्पेस फाइलनेम टाइप करें और एंटर दबायें
अब हम अगर एन्टर दबाते हैं तो कमांड उपयोगकर्ता से निवेश यानि इनपुट के लिए इंतज़ार करता है
जो भी हम टाइप करते हैं वो फाइल में लिखा जाता है
तो कुछ टेक्स्ट टाइप करें
अब एंटर की प्रेस करके इनपुट का अंत करें
अब कंट्रोल तथा डी की दोनों को एक साथ प्रेस करें
अगर फाइल उदाहरण के लिए फाइल 1 पहले से ही मौजूद है तो उपयोगकर्ता का इनपुट इस फाइल पर ओवरराइट होता है
अब यदि आप पहले से मौजूद फाइलफाइल 1 के अंत में जोड़ना चाहते हैं तो प्रोंप्ट पर कैट स्पेस डबल राइट एंगल ब्रैकेट स्पेस फाइल1 टाइप करें और एंटर दबायें
यहाँ कई अन्य कमांड हैं जिनपर हम चर्चा कर सकते हैं लेकिन फिलहाल यहीं तक सीमित रखते हैं
असल में बताए गए कमांड्स में भी कई सारे ऑप्शंस हैं जिनपर चर्चा नहीं हुई है